अँ आ रखे हैं। बहार एक बड़ी दुकान लगी हुई है।

एक दूल्हा खड़ा है अ उसके पीछे दूल्हे की कुर्सी है अ दूल्हे ने शेरवानी --

श्री हिंगलाज बुक डिपो में तीन आदमी और एक बच्चा खड़ा है और क्या यहाँ दुकान में स्टेशनरी और स्पोर्ट्स का सामान रखा हुआ है।